ये पिलो से भी रखे है और यो जिस तरह हरा-हरा घास होय कर्रे जो हम बिछाया करा।

यो फोटो देख लो इस फोटो में हमने घने श्रद्धालु देखे हैं मंदिर हैं दो अलग अलग।

इस फोटो में थम देख सको हो यो एक बड्डे मंदिर का गेट दिखाई दे रहा है जिसमें मंदिर की चोटियां भी बनी हुई दिखाई दे रही है।

और आप देख सको एक या गडी सी बन रही है जो कच्ची दिखाई दे रही जिसमें मिट्टी वगैरह पड़ी हुई हैं।

क्योंकि इसमें ये जगह बना रखी जिसमें फौजी ट्रेनिंग करा करें जिस त्राय रस्सी वगैरह प चढ़ केय और--

और वर्कर भी है जो पेट्रोल पंप प काम करें हैं ये अपने ड्रेसिंग वगैरा भी पहे--

आप देख सको हो इसमें बहोत अनेक तरीके की मशीनें वगैरह रखी हुई हैं और काफी वर्कर हैं जो काम में सब जुटे हुई हैं।

टिंडे वगैरह बंधे हुए हैं हरी मिर्च मटर वगैरह बंद कर रख रखी हैं।